यहां बहोत हर भरा पेड़ पौधा लगाया गया है।

इस ऑफिस में बहोत सारा अलमारी लगी हुई है।

और एक झंडा भी दिखाई दे रहा है।

यहां पे काफी आदमी लोग भी हैं।

दुकाने में बहोत सारा अलमारियां लगाया गया है।

अगल बगल बहुत सारा पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

यह एक बहुत बड़ा स्टेज बनाया हुआ है।

यहां पे एक गाड़ी आगे से खुला हुआ है।